यहाँ पर एक मंदिर है मंदिर बहुत ही बड़ा है मंदिर में चार अलग अलग पिलर --

की एक प्राइमरी स्कूल और एक स्केंडरी स्कूल स्कूल है यह अंदर जाने के लिए एक ही --

इनके अंदर जाने के लिए भी बनाई गई है।